और वहां पे एक दिवार भी दिख रही है कम्पाउंड के गेट से आसमान दिख रहा है धूप निकली हुई है वहां पे कोई आदमी नजर नही आ रहे है।

गुफा जैसा कोई दिख रहा है बड़े-बड़े अ जो पत्थर के बने हुआ है एक गुफा के जैसा दिख रहा है आजू-बाजू में भी वहाँ से अंदर जाने के लिए एक रास्ता दिख रहा है दूसरी तरफ भी एक गुफा के जैसा दिख रहा है।

एक ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड पे कुछ लो लड़के खेलते नजर आ रहे हैं वहाॅं पे आने-जाने के लिये एक रास्ता दिख रहा है।

और फोटो खींचता हुआ नजर आ रहा है हॉल मे कुछ रेड कलर की चेयर रखी हुई दिख रही है और लाइ और लाइट का फोकस चालू है वहां पे स्टील का --

और दिन का समय दिख रहा है वहां पे कुछ गमलें दिख रहे हैं जिसमें पौधे दिख रहें हैं और एक लड़का वहां से बैग लेके हुए जाता हुआ दिख रहा है दिन का समय दिख रहा है और दूर भी वहां भी कोई अ लोग दिख रहे हैं और --

छोटी-सी अ किनारों पे नाव भी दिख रही है। एक किनारे पे एक आदमी खड़ा दिख रहा है। आसमान दिख रहा है। संध्या का समय दिख रहा है। सूरज जो है डूबता हुआ नजर आ रहा है।